पिंक कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके बाहर बहुत सारे टायर खड़े हुए--

ये कार्सी इंटरप्राइजेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर एक--

सैनिक ने कार के बोनट को खोल रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर--

क्या है यहां पर साइड में टेंट भी लगा हुआ दिखाई--

बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है और गाड़ियों का कलर ब्लू कलर का --

मेरे सामने एक फंक्शन चल रहा है।

यहां पर आदमी ने बैग ले रखा है यहां पर एक बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर एक मोटर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ पाइप नीचे भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

और कच्ची मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

चल रहा है। यहां पर एक व्यक्ति पार्क में--

यहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए--

यहां पर स्टेशन पर पटरियां भी दिखाई दे रही हैं।

ए है सर्विस स्टेशन के ऊपर एक की शेड भी बनाई हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे शॉपिंग करते हुए नजर--

भी दिखाई दे रहे हैं चोरों का--

घर में लोहे की ग्रिल भी लगी हुई दिखाई--

और उसमें कुछ कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई--

आगे का कलर येलो कलर दिखाई दे रहा है।

इसकी दीवार रेड कलर की दिखाई--

यहा पर दो एक एल_इ_डी भी लगी हुई।

बिल्डिंग में गेट भी लगा हुआ दिखाई--

एक जाला दिखाई दे रहा है जाल का कलर येलो कलर --

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाइ--